बहुत सारा गाड़ी सब दिखाई दे रहा है असमान का रंग उजला दिखाई दे रहा है।

ये स्टेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लेटफोर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो कुत्ते दिखाई दे रहा है।

पटरी दिखाई दे रहा है उस साइड दुकान सा दिखाई दे रहा आसमान का रंग--

तो अपने के पीछे एक जैसा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे--

मिला हुआ थोडा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक लाठी की तरह धरा हुआ दिखाई दे रहा है।

रंग उजला दिखाई दे रहा है पंखा का रंग बलैक दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा ढोल और ड्रेसर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है रेड कलर का यहाँ पे कार दिखाई दे रहा है कार का सभी गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे शादी व्याह का मंडप सजाया गया है बहुत सारा सौ सब टेंट सब लगा हुआ है।

यहाँ पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का कपडा पहने हुवा है और ब्लैक कलर का टोपी भी पहना है हाँथ में कुछ रखा हुआ वाइट कलर दिखाई दे रहा है।

भी आज एक आदमी खड़ा है जो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है यहाँ पे माइक में एलाउन्स कर रहा है ।

और यहां पर बहुत सारे सामान रखा हुआ है दिखाई दे रहा है पीछे भी एक आदमी खड़ा है ।

पौधे से दिखाई दे रहे यहाँ पे लोहा सा दिखाई दे रहा है जिस में कुछ कर रहा है एक आदमी --

छोटे छोटे बाल्टी में भी पोधा दिखाई दे रहा है हरे भरे पोधे बोहोत सारे दिखाई देरे है बड़े बड़े शायद घर जेसा भी दिखाई देरा है।

यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है निचे में हरा कलर का बहुत सारा दरी बिछा हुआ है जिस में वाइट कलर का भी दरी बिछाया गया है।

यहाँ पे हंस का मोड़ का बीज बनाया गया है वाइट कलर का --

इधर बहुत सारा सोफस लगा हुआ है बहुत सारा टेबल्स रखा हुआ है ।

बहुत सारा सिरहानीस रखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारा आदमी तीन चार बैठे हुए हैं।

यहाँ पे बल्ब्स लगा हुआ है और छत का रंग ब्लेक दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे हरे कलर का पेड़ सब दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

हरा कलर थोड़ा पैंट किया गया है दिखाई दे रहा है घड़ी पे ना चश्मा बना दिखाई दे रहा है इधर ।

एं तो खाली मुह फैशियल कला ला ह जो फोन से अवी जो चीज शीशा म देख रहा ह और ऊपर दरार सब लॉक ल्हा है।

और यहाँ पे सैलून दिखाई दे रहा है सैलून के समान से यहाँ पे चश्मा धरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे पानी बोतल अम्म दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे खेत सब दिखाई दे रहा है असमानकरण विच्छेद दिखाई दे रहा है उस साइड गो बहुत सारे पेड़ पौधे से दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बुक का दुकान है जिसका नाम श्री राजेश वारी बुक --

मेन्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पे शीशा लगा हुआ है अंदर बहुत सारा समान सा है बहुत सारा आदमी सा दिखाई दे रहा है ।

ऊपर बिजली का तार जैसा दिखाई दे रहा है और इस साइड चित्र दिखाई दे रहा है एक लेडिस का--

और यहाँ पे दो एक आदमी दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं एक लेडिस दिखाई दे रही है।

यहा पे फूहार दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर के है उस तरह के सीधे लगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ पौधे स लाइन लाइन दिखाई दे रहा है।

ये एक ऑफिस है बहुत सारे इसमें बल कलर का कुर्सी दिखाई दे रहा है और यहां पे बहुत सारा मशीन सब दिखाई दे रहा है छोटे छोटे।--

पानी का बोतल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक छोटे से ब्लैक कलर का एल_सी_डी भी दिखाई दे रहा है।

और ये व्हाइट कलर का रुम दिखाई दे रहा है और इस साइड काउंटर लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

मर्करी सा लगाया हुआ है व्हाइट कलर का रूम दिखाई दे रहा है एक साइड काउंटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे शीशा लगा हुआ है।

पेड़ सा दिखाई दे रहा है आसमान का रंग थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है एक आदमी टोपी पहने हुए दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा सा यूके पिज़्ज़ा का फैटिक दिखाई दे रहा है जिसके बाहर नीला कलर का दोनों गेट पर--

तो लगा हुआ है लाइट दिखाई दे रहा है इसी सब में कुछ लौक रहा हैं जो--

कठपुतली सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बढ़िया है रेड ब्लैक वाइट कलर सब जैसा दिखाई दे रहा है।

जो बहुत दूर में दिखाई दे रहा है बहुत ऊंचाईयां पे तार लाइन वाला बिजली दिखाई दे रहा है आसमान का रंग थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है जिस पर नेता जी भाषण दे रहा है यहाँ पे क--

और एक चित्र दिखाई दे रहा है नेता जी का फोटो पीछे दिखाई दे रहा है।

गाड़ी का चित्र भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर का शीशा लगा गेट भी दिखाई दे रहा है --

ये सब दिखाई दे रहा है काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर में गेट ब अ ब्लैक कलर का --

पीला कलर उधर कुछ दिखाई दे रहा है बिजली का तार सा दिखाई दे रहा है बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है ये सारे दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पिलर दिखाई दे रहा हैं ग्राउंड जैसा घेरा दिखाई दे रहा है और साइड पे बहुत सारा घर दिखाई दे रहा हैं बिजली का तार दिखाई दे रहा हैं आसमान का रंग थोड़ा उजला दिखाई दे रहा है।

और इस साइड में ब्लैक कलर का काउंटर दिखाई दे रहा है जिसपे सैनिटाइजर और स्कैनर दिखाई दे रहा है उस साइड एक आदमी दिखाई दे रहा है पीछे तीन सौ साठ पर लिखा हुआ कुछ दिखाई--

ऊपर बॉल जैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तीन चार दिखाई दे रहा बॉल चमकता है तो बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है।

ये एक वाइट और ब्ल्यू कलर से री पेंट किया गया है यहां पे साइड बोरा दिखाई दे रहा है यहां पे कार दिखाई दे रहा यहां पे चक्का लगा--

और यहां पे पेड़ लगा दिखाई दे रहा है हरा कलर का और साइज़ --

यहाँ पे बेड्स लगा हुआ हैं यहाँ पे दोकावती हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मशीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाइट कलर का दीवार दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो बेड इधर भी लगा हुआ हैं।

पूरा टाइल्स लगा हुआ हैं यहाँ पे बॉल भर रहा हैं नीचे साइड कार दिखाई दे रहा है शीशा दिखाई दे रहा है।